साइड में और लिखा है एच_पी जीसमें दो नोजल है ।

यह कोई किसी कमरे का चित्र है जो कमरा पूरी तरह से बंद है जिसमें कोई नहीं है |

एक बहोत बड़ा बिजली का खंबा भी है नीचे में एक बिजली का खंभा गिर गया है।

कुछ बच्चे सो रहे हैं और ऊपर में पंखा बहोत सारे लगे हैं।

बहुत बड़ा दुकान का चित्र है जिसमें कुछ प्लास्टिक के मूर्ति भी है।

में तीन बालकनी भी है दो पेड़ हैं।

उसमें दो खिनकियां है जो खिनकियों में लाल कलर का है रंग।

यह कोई बिल्डिंग का चित्र है जो बिल्डिंग में दो ए_सी है।

ऊपर में दो चार लाइटें जल रही है और तीन चार पंखे हैं।

एक लोहे का सीधी भी है एक काली कलर का प्लास्टिक का टूल है ।

ये कोई नहर का फोटो है।

दिवाल सफेद कलर का रंग है एक फ्रिज भी है।

पीछे टिशू पेपर्स हैं और पीछे कांच के कुछ आईने हैं।